व पानी गिरा हैं नीचे गमले का पौधा हैं और बड़े बड़े पेड़ भी र हैं।

और उसके सामने ही पोस्टर लगे हुए--

और कुछ कार खड़े हुए हैं कुछ गाड़ियां खड़े हुए हैं और झालर लगे हुए हैं यहां कुछ हो रहा है।

और रेती में सो गए है।

ये एक बड़ा सा मैदान हैं जहां कार रखे हुए हैं।

औ बहोत अंधीला लग रहा है यहां और कुछ आस पास मकान भी है इधर--

यह एक मछली बजार है। मछलियों ढेर सारे मछलियाँ है और तीन लेडिस है और बहोत सारे जेंट्स भी है और बच्चा है।

और बहोत सारे कार रखा हुआ है और ढाबा के अंदर एक आदमी जा रहा है और बाहर में--

और ऐना भी दिख रहे हैं खिड़की भी दिख रहे हैं ए_सी भी दिख रहे है बेसिंग भी दिख रहे हैं।

और एक लेडिस खड़ी हुई है और--

ये बाईगीचा है और दो लेडिस हैं।

दो टीचर है और मास्क लगाए हुए है।

और बहोत सारे बच्चे हैं कॉम्पिटिशन हो रहा है बच्चे लोग का कुछ कुछ बना रहे हैं। फेविकोल रखा हुआ है।

और रेड कलर का नीचे चटाई भी जठाया हुआ है।

यहां पे एक मैकेनिक बैठा हुआ है और उसको कुछ काम कर रहे हैं।

और यहां चटाई भी जठा हुआ है गोल्डन कलर का--

नौलखा ज्वेलर्स का दुकान है। बाहर जूता चप्पल रखा हुआ है कस्टमर आया है।